सामने एक पीली पन्नी का वो टंगा हुआ है दिखाई दे रहा है।

इसमें बहुत सारी लाइटे लगी हुई है और बड़ी लाइट ऊपर की साइड जल रही है।

एक एक्टिवा खड़ी हुई है और आगे के साइड में गाड़ी खड़ी हुई है।

इस तस्वीर में हमें बहोत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं।